सीढ़ी है सीढ़ी के ऊपर जा सकते है एगो साइकल है साइकिल का कलर बहुत अच्छा है सीढ़ी भी बहुत अच्छी है आप लोग देख सकते हो जाइएगा तो बहुत मज़ा आता है चढ़ने में दरवाजा भी बहुत अच्छा है और दरवाजा बहुत अच्छा है जो कि आप लोग जा नहीं सकते है आइए मिलते है।

लाल है पीला है उजला है बहुत अच्छा से दिख रहा है अच्छा दृश्य देखने में बहुत अच्छा लग रहा है जो काफी देख सकते हैं।

एक सायकल दिख रहा है सायकल एकदम मगन बनाने वाला है सायकल ठीक करने वाला दिख रहा है दरवाजा है चार टायर है ट्यूब है पंखा लगा हुआ है लाइट जल रहा है लाईट व्हाइट कलर का है उपर में एक दम पेड़ पौधा लाईट वाइट लगा हुआ है।

उपर नीचे एकदम अधेरा है और अन्दर में लाइट लगा हुआ है साइकिल है साइकिल के पास एक आदमी बैठा हुआ है और ठीक कर रहा है साइकिल --

हमको दिख रहा है की चारो परिवार का झुंड खड़ा है जोकि एक घर बनाया हुआ है घर के ऊपर टीना ठका हुआ है साइड मे खेत है खेत मे हरियाली भरीयाली दिख रहा है।